यह रुद्र गर्ल्स हॉस्टल है।

यहा मारुति सुजुकी लिखा हुआ है।

यहां एक स्टेज है। यहां स्टेज सजा हुआ है।

कुछ में फूल लगे हुए हैं।

यहां ग्राउंड में हरे रंग घास लगी हुई हैं।

ये एक बिल्डिंग है।

यहा क्रीम कलर से पुता हुआ है।

आइसक्रीम बेच रहे हैं।

बड़े ही शांति से बैठ के--

यहाँ पर बहुत से--

यहाँ पर हरे रंग का--

और एक बड़ा सा लाइट --

और घने बादल भी दिख रहे है।

यहाँ पर डांस हो रहा है।

यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

खड़ी नजर आ रही है।

यहाँ पर संतरा केला एप्पल मौसंबी--

दो टेबल और दो चेयर रखे नज़र आ रहे हैं।

तेजा बुक स्टॉल है यहां पर बुक्स --

गाड़ी सुधारी जाती है।

प्लेट में रखा हुआ है यह--

कार में पेट्रोल डल रही है।

कार का डंपर खुला हुआ है।